एक बच्चे बैठकर नोट्स पे कुछ लिख रहे--

गर उसकी तरह दिखाई दे रहे है और मंदिर के बाहार में--

इंसान बैठे हुए हैं और दो तीन में इंसान खड़ा हो कर मछली ले--

इस पिक्चर से ये पता चल रही है कि एक देवी माता और एक देवता का पूजा चल रहे देवी माता और देवता का गले में--

फूल का माला डला हुआ है उनके पीछे एक इंसान खड़ा है और कुछ लड़कियां उनका पैर पूजन कर रहे हैं।

जिसमें बहोत सारे लोग खड़े हैं और एक ट्रेन जा रहा है जिसका--

एक चटाई पड़ा हुआ है जिसमें बहोत सारे--